पेंट की जेब में हाथ डाली है एक बहुत बुजुर्ग आदमी खड़ी है।

टेबिल के ऊपर बहोत ज्यादा चॉकलेट रखा हुआ है चॉकलेट का--

और ऊपर अ लाई राइट साइड में बहोत ज्यादा पेन रखा हुआ है।

खंभा पे और एक आदमी बैठा हुआ है बैठे बैठे काज काम कर रहा है और एक सामने दो फू एक फूल का जो पेर है पेर --